इस पेट्रोल पंप पर एक बहोत ही बड़ासा ट्रक खड़ा हुआ नजर आ रहा हैं।

मुझे इस फोटो पर एक मच्छी मार्केट नजर आ रहा हैं।

फल फ्रूट का ठेला नजर आ रहा है।

संतरे तथा और भी फ्रूट नजर आ रहे हैं।

मुझे इस फोटो पर एक रोड नजर आ रही है।

टेबल रखी हुई तथा टेबल के साथ एक कुर्सी भी रखी हुई नजर आ रही है।

साथ ही बेड की एक छोटा सा प्लेटफार्म पर सिंक भी लगा हुआ है।

मुझे इस फोटो पर एक बड़ा सा सैलून नजर आ रहा है।

बहोत बड़े बड़े बिजली के खंभे लगे हुए नजर आ रहे हैं।

तथा साथ ही एक बच्चा भी मौजूद है।

एक बड़ासा तालाब नजर आ रहा है।

मुझे इस फोटो पर एक छोटासा रेल्वे स्टेशन नजर आ रहा है।

तथा इस रेलवे स्टेशन पर दो आदमी भी दिखाई--

इस होटल का नाम मुझे होटल गेटवे कर्नाटका लिखा हुआ नजर आ रहा है।